और दो-तीन लड़के फोटो खिचवा रहे हैं।

यह फोटो एक व्यक्ति की है जिसने टोपी पहन रखी है और वह --

नृत्य करती हुई नज़र आ रहीं हैं | इनके नृत्य का थीम देवी दुर्गा माँ का लगता है | जिनमे सारी लड़कियां एक साथ डांस कर रहीं हैं।

यह फोटो किसी स्कूल का है जहां ढेर सारी बालक बालिकाएं एक साथ हॉल में एकत्रित होके किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं।

यह फ़ोटो एक गांव की है जहाॅं छोटी सी मंदिर बनाई गई है और ढेर सारे गांव वाले यहाॅं एकत्रित हैं।

यह फोटो एक हेयर सैलून का है जिसका नाम न्यू ताज है। जिसके बाहर कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं। दुकान खुला हुआ है।

यह फ़ोटो एक नदी की है नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है पुल भी पानी में थोड़ा डुब गया है अर्थात पानी में बाढ़ आया हुआ है।

बहुत ढ़ेर सारे व्यक्ति पानी में एक साथ स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे हमें कुम्हार के यहाँ बने हुए मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो सड़क की है। जहाँ सड़क पे ढेर सारी गाड़ियाँ आती और जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

यह फ़ोटो एक स्कूल की है जहा ढेर सारे बच्चे मार्शल आर्ट्स सीखते हुए नजर आ रहे हैं। इन बच्चों ने मार्शल आर्ट् की कपड़े पहन रखे हैं।